में हमें भूरे कलर का एक पत्थर दिख रहा है उसमें तीन दरवाजे के रूप में छेद बने हुए हैं।

इसमें एक पानी की बड़ी नहर दिख रही है नहर के चारों तरफ कुछ लोहे के उपकरण लगे हुए हैं।

इमारत के सामने कुछ वाहन खड़े हुए हैं जो की पीले रंग के रंग के रंगे हुए है इमारत के बीच में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

टेंट के बाहर कुछ पौधे रखे गए हैं। टेंट के पीछे एक गुब्बारा दिख रहा है।

के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है कुछ मेज़ दिखाई द रही है।

इसमें हमे दो कारे दिखाई गई है एक कार नीले रंग की है एक कार सफेद रंग की है नीले कलर की कार के सामने बैठकर एक आदमी कार की सफाई कर रहा हैं।

इसमें एक गड्ढा दिख रहा है। जिसमें पानी और सीमेंट भरा हुआ है। इसके बीच में एक सीमेंट का स्तंभ दिख रहा है।

इसमें एक रोड दिख रही है रोड के बाई तरफ एक सफ़ेद कलर की मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

इसके सामने एक छोटा-सा मकान बना हुआ है जिसमें सफेद रंग का बोर्ड लगा है इसके चारो तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखे है दिख रहे है इसके पीछे एक मोबाइल टावर दिख रहा है।

सभी कारो के शीशे काले रंग के दिख रहे हैं कार के पीछे कुछ पेड़ और कुछ मकान दिख रहे हैं।

गेट पे ऊपर लाल रंग के अक्षरों में अजय भवन लिखा हुआ है।